स्टूल भी रखा हुआ है स्टूल के ऊपर बोर्ड भी है और यहां पर गुलदस्ते भी रखे हुए है।

बहोत सारे पहाड़ भी हैं यहां पर घर भी हैं यहां पर तारे भी हैं और यहां पर सनलाइट भी है।

यहां पर बहोत सारे गुलदस्ते भी हैं यहां पर टेबल भी है और यहां पर सीढ़ियां भी है और यहां --

दरवाजे भी बनाए हुए हैं और यहां पर बैठने के लिए स्टूल भी है और यहां पर पोल भी लगे हुए हैं और यहां पर पेड़ पौधे भी हैं।

यहां कार वॉशिंग होती है यहां पर एक गाड़ी भी है जिसकी कार वॉश की जा रही है और यहां पर दो व्यक्ति कार को वॉश कर रहे हैं और उनके पास बाल्टी भी है और--

और यहां पर पर्दे भी लगाए हुए हैं और यहां पर तकिए भी है और यहां पर पिलर भी है और यहां पर टी_वी भी है।

और यहां पर पेटी भी रखी हुई है और यहां पर छाता भी रखा हुआ है और यहां पर खिड़की भी एक है।